दी गई तस्वीर न्यू ताज हेयर सैलून की है।

दी गयी तस्वीर बलदेव पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की है यहां पे नर्सरी कक्षा से --

कंप्यूटर अध्ययन कर रहे हैं और एक अध्यापक के द्वारा इन विद्यार्थियों को इंस्ट्रक्शन --

आदि दिखाई दे रहे है सर्विस के क्रम में एक ऑटो को सही कर रहे है।

पंखे और एग्जॉस्ट फैन उपलब्ध है यह नगीना स्टॉल के सामने ही अंकित है।

और सामने एक अलमारी दिखाई दे रही है यहां पे पीने के पानी के लिए एक कैम्पर रखा हुआ है।

दी गई तस्वीर जालिमा हेयर एंड ब्यूटी सालों की है यह एक ब्यूटी पार्लर है।

दी गयी तस्वीर एक मंदिर परिसर की है यहां पे कांच के बॉक्सों मे बहुत सारे देवी देवताओं की--

दीवारो पर और छत पर एल_ई_डी लाइट लगाई गई है यहा दिखाने में बहुत --

देखने के लिए आए हैं यहां टेराकोटा के प्रदर्शनी लगी हुई है जहां दूर दूर से लोग आते हैं।

टेबल और कुर्सियां रखी गईं है सामने ग्रीन बोर्ड है और दो छात्राएं --

फर्नीचर बनवाया हुआ है और कुर्सियां भी लगाई गई है दीवारों पे गुब्बारों से सजावट की हुई है।

दी गई तस्वीर कन्हैया लाल ज्वेलरी एंड संस की है यह सोने चांदी के आभूषणों के विक्रेता हैं।